ये एक महाविद्यालय जहाॅं पे लोग पढ़ने जाते हैं ए जाली के अन्दर बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं गेट के बाहर भी बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इनकी ये स्पेशालिटी है कि ये चार्ज हो जाते हैं और ये बिना बैटरी बिजली के चलते हैं एक का कलर है ग्रीन और एक का कलर है ब्लू ।

बाहर जाने लगी हैं जो गेट लगा हुआ है बाहर मैदान है जो कि उसमें ग्रीन कलर की घास उग रही हैं साइड में बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

सबके कलर दो बाइक खड़ी हैं। जिनके कलर ब्लैक हैं और बोहोत सारे लोग खड़े हैं। जिसके कलर ऑरेंज रेड और व्हाइट --